यहाँ सामने सफेद रंग का दरवाजा है ।

लड़के ने हुडी पहन रखी है।

यहाँ सामने एक आदमी हाथ में मशीन लेके कार की मरम्मत कर रहा है ।

कार बिल्कुल खराब हो गयी है ।

आगे से उसकी पाहिया निकाल दिया गया है।

दोनों लड़कियों ने बैग टांगे हुए है ।

नदी के दुसरे साइड पर पत्थरो पर काफी सारे छोटे-छोटे पौधे नजर आ रहे हैं ।

बीच में कुछ सेलेड्स को डिजाइन से काट के रखा गया हुआ है।

पूल के नीचे का पाया पे काफी सारे पोस्टर लगे हुए है।

यहाँ सामने टोकरी में काले रंग का अंगूर है।

किनारे एक बैग नज़र आ रहा है। सामने एक स्टूल है। उसके ऊपर काफी कुछ सामान रखे हुए हैं। किनारे एक छोटा-सा कार्टून बना है। पीछे पर्दा लगा है।

जमीन पर कुछ पैकेट्स नज़र आ रहे है यहाँ पर किसी के पैर नज़र आ रहा है सामने सड़क है।

दुकान के सामने एक वाटर कूलर रखा हुआ है सामने एक फ्रिजर नजर आ रही है ।

यहाँ पर सामने एक झंडा लगा हुआ है।

सामने काफी सारे पत्थर हैं जो उसमें जो छोटे और बड़े पत्थर है। यहाँ पर काफी लड़के बैठे हुए --

सामने एक लड़का खड़ा है जिसने गले में टी-शर्ट बांध रखा हुआ है।

यहाँ पर का तीन चार पेड़ लगे हुए हैं ।

कुछ डोरमेट हुए है। कुछ इधर से उधर बिखरे हुए है। समाने एक नीले कलर का डोरमेट है।

कुछ कत्थई कलर के डोर मैट है।

दूर पर काफी लोग नजर आ रहे यहाँ पर सामने एक ऑरेंज कलर की कुर्सी है। पीछे बेंच है। काफी बोरे है।